खड़ी है स्कूल दिखने में बहुत अच्छा --

जहां बहत से गाड़ियों को पार किया गया है।

यहां हमें एक पानी का डैम दिखाई दे रहा है जो की बहुत बड़ा है दिखाई दे रहा है।

पुलो की तोली बना कर कैफ़े को सजाया गया है रंग-बिरंगे लइटो से --

यहाँ पे एक पुराना घर --

हमें यहाँ एक बैंक दिखाई दे रही है जो की एक्सेस बैंक है।

यहाँ बैंक का एंट्रेस गेट दिखाई दे रहा है और हमें यहाँ सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

जिसे बहत ही अच्छे तरीके से फूलो से सजाया गया है।

यहाँ हमें एक रेस्टोरेंट नजर आ रहा है जहाँ कुछ लोग अपने फैमिली के साथ नजर आ रहे हैं।

यहां घास से बने हुए एरियाज भी नजर आ रहे हैं।

और आजू-बाजू में कुछ घर भी दिखाई दे रहे है।

एक बड़ी रास्ता भी दिखाई दे रहा है और बड़े-बड़े घर और मंदिर भी दिखाई दे रहे हे।

और ये बच्चे कपड़े से स्कूल के बच्चे से दिखाई दे रहे हैं जोकि --

जहाँ बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते नजर आ रहे हैं।

हीरो को कट कर के स्टेप बाई स्टेप डिजाइन --

जहां पे कलर कलर के वाटर स्लाइडे बनी हुई है।